और ये पार्क बहुत मस्त है बहुत सुंदर है देखने लायक है देखने से बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर लग रहा है।

ओ माई गॉड ये देखो केतना अच्छा लग रहा है देखने में कितना सुंदर है।

ओ माय गॉड ये देखिए यहाँ पे कितना बड़ा भीड़-भाड़ है।

इतना अच्छा है की आप भी देख कर चौंक रहे है कितना सुंदर है बहोत अच्छा है बहोत अच्छा।

हरा-हरा जगह पर खड़ा है बहुत सुंदर जगह पर खड़ा है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है मत पूछिए बहुत ब --

दीजियेगा भगवान कितना अच्छा बनाया है मिस्त्री को मिस करियेगा भगवान उसको हमेशा खुश रखियेगा भगवान।

देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये पेट्रोल टंकी कितना बढ़िया लग रहा है मत पूछिए बहुत बड़ा भयानक है।

और बहुत लंबा-चौड़ा है उधर देखिए लग रहा है कि बहुत सारे आदमियों का भीड़ है यहां पे।

यहाँ पे कितना बढ़िया जंगल जैसा लग रहा है पहाड़ की मत पूछिए इतना सुन्दर है इतना मस्त है।

एक्टिवा का है क्या पता नहीं बहुत सुंदर है यह।

ओ माय गॉड यहाँ देखने के लिए मिलेगा अच्छा-अच्छा नजारा --

यहाँ देखिए जय हो भगवान जी जय हो माता रानी माता रानी के चरणों में प्रणाम करो नमन करो कितना सुंदर है।

बहोत भयानक लग रहा है देखने लायक लग रहा है देखिए एक जेंट्स है नहीं ये जेंट्स नहीं है शायद लड़की है अंदर में।

इतना मस्त लग रहा है देखने में गांधी जी वगैरा सब का फोटो यहाँ पे दिख रहा है बहुत बढ़िया सरस्वती माँ की भी पिक दिख रहा है।

बहुत भयानक लग रहा है देखने में बहुत सुंदर है इतना मस्त है कि अभी इतना --

और गाड़ी के साथ-साथ देखिए यहां पे एक लेडिज दिख रही है।

नहीं रह पाता है ये इतना सफाई है इतना अच्छा व्यवस्था है सुविधा है यहाँ पे हर एक चीज का।

उधर देखिए यहां तो लग रहा है एयरटेल का सिम है।

ऐसा ए.सी. लगाया गया है और यह देखिये है एक रोड भी बहुत बढ़ियाँ है रोड है बहुत बढियाँ लग रहा है देखने में।

ओ माई गॉड ए भईया क्या कर रहे हो आप ?

हरा पीला दोनों रंग के केला है अ केला लाद के साइकल पर ले के जा रहे हैं।

और पुल के किनारे खड़ा हैं और बहुत बढ़िया लग रहे हैं लेके जाने में बहुत सुंदर लग रहे हैं।

ओ माय गॉड देखिए कितना अच्छा बच्चों को --

बहुत भयंकर देखने में लग रहा है देखिए कैसे तैयार कर रहा है कितना मेहनत लगता है बनाने में।

कितना मस्त है की दूर से नजर आ रहा है देखिए इतना मस्त है यहाँ से सीढ़ियों से चढ़िए।

बच्चे लोग कैसे डांस कर रहे हैं खेल रहे हैं कूद रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है कितना सुंदर है मत पूछिए।

प्रणाम कर रहे है भगवान जी बजरंग बली भी है इसमें भोले नाथ सब भगवान है देखने में अच्छा पूजा हे होगा बहुत बढियाँ भगवान है बहुत मस्त लग रहा है देखने में।